बहोत ही सुंदर नजारा है जिसमें लोहे के गेट लगे हुए हैं।

एक मकान बना हुआ है और ग्रीन ग्रीन पेड़ लगे हुए हैं।

सामने से एक मकान भी बना हुआ है इसके पास में जो भी बहोत सुंदर लग रहा है।

शाॅप पे लगे हैं बैग टंगे हैं ऊपर से कांच की अलमारी बनी हुई है और यह जो की बहोत सारा ही सुदंर है।

और यह चल दो दुकान हैं आसपास और लाइट के मीटर लगे हुए हैं यहां पे और ये एक अच्छी सी दिख रही है जो पीछे--

यह एक स्कूल बना हुआ है जिसमें गेट्स लगे हैं ब्लू कलर के और ऊपर से एक ग्रीन कलर का पेड़ लगा हुआ है जिसमें अह बेंच रखी हुई है लोहे की।

और कुछ मैंस हैं कुछ वूमेंस खड़े हुए हैं एक पार्क में खड़े हुए हैं।

कई सारे इसमें अ मैंचु मेन से खड़े हैं जिसके अंदर बैठे हुए हैं।

फार्म हाउस बना हुआ है जिसमें स्टोर किया जाता है और एक निशानी लगी ग्रीन कलर से बनाया है लोहे के पा--

सामने मिरर लगे हुए हैं और ऊपर से रेलिंग लगी हुई है और उसमें अंदर तीन चेयर रखी हुई है।

हां बोल सकते हैं और तीन चार पेड़ लगे है वजन वेट करने का मशीन लगा हुआ है।

ये एक लड़का है जिसने आज किए है डिजाइन इसमें कटिंग हेयर कट करवा रखे हैं इसने कट लगवा रखे है डीप --

यह एक गार्डन है और इस गार्डन के बाहर एक गेट लगा हुआ है लोहे का और उसके अंदर पार्क बना हुआ है ग्रीन कलर का --

फ्रेंच की दुकान है पेट्रोल जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट रखते हैं।